जिन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी है ग्रीन कलर की पॉलिथीन पकड़ रखी है यहां पर काफी दूर-दूर तक पानी दिखाई दे रहा है।

जहां पर काफी सारे कप रखे हुए हैं यहां पर एक--

यहां पर एक लेडी खड़ी है जिन्होंने ब्लू कलर का कुर्ता पहन रखा है।

यहां पर एक आदमी खड़ा है जिन्होंने लाइट पिंक कलर की शर्ट पहन रखी है।

यहां पर एक पेट्रोल पंप है जहां पर कुछ गाड़ियां जा रही हैं।

यहां पर एक लड़की जा रही है जिसने वाइट कलर की फ्रॉक पैन रखी है यहां पर ब्लू ब्लैक कलर की बाइक खड़ी है इस पर हेलमेट रखा हुआ है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट है जहां पर कुछ टेबल और चेयर डबी हुए हैं यहां पर टेबल पर जग रखे हुए हैं डिस्पोजल ग्लास रखे हुए हैं।

वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है यहां पर दो चेयर डली हुई है एक चेयर पर एक आदमी बैठे हैं जिन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है।

यहां पर एक जिम सेंटर है यहां पर एक मिरर लगा हुआ है यहां पर कुछ लाइट चल रही है यहां पर कुछ बलून से डेकोरेशन की गई है।

यहां पर कुछ लाइट चल रही है यहां पर वॉल फैन लगा हुआ है यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है।